लिब्रियोफिस माथ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे सेट आपरेशंस लिखें फैक्टोरियल्स लिखें और क्रमांक द्वारा क्रॉस रेफरेंस इक्वेशन इसके लिए सबसे पहले अपना उदाहरण राइटर डॉक्यूमेंट जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था खोलें mathexample1ओडीटी
यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं और नए पेज पर जाने के लिए कंट्रोल एंटर दबाएं
औरSet Operations टाइप करें और दो बार एंटर दबाएं
अब माथ को कॉल करते हैं
आगे जाने से पहले फॉन्ट साइज़ 18 पॉइन्ट तक बढ़ाएं
एलाइनमेंट को लेफ्ट में बदलें
अब सीखतें हैं कि सेट आपरेशंस कैसे लिखें
माथ के पास सेट्स दर्शाने के लिए अलग अलग मार्क अप हैं जो पृथक एलिमेंट्स का संग्रह है
स्क्रीन पर प्रदर्शित फॉर्मुला एडिटर विंडो में 4 उदाहरण सेट्स लिखते हैं
5 एलिमेंट्स के साथ सेट आ सेट ब सेट सी और प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ सेट डी ध्यान दें कि सेट्स के ब्रैकेट्स लिखने के लिए हम मार्क अप उपयोग कर सकते हैं ल्ब्रेस और आरब्रेस अब हम सेट ऑपरेशंस लिख सकते हैं जैसे कि यूनियन्स और इंटरसेक्शन्स सबसे हम पहले यूनियन ऑपरेशन लिखते हैं
ब यूनियन सी के लिए मार्क अप है जैसे कि हम इसे पड़ते हैं
और परिणामी सेट 1 2 6 4 और 5 है जो दोनों सेट्स में पृथक एलीमेंट रखता है
इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए मार्क अप है जैसे कि हम इसे पड़ते हैं
इंटरसेक्शन दोनों सेट्स के सिर्फ समान एलिमेंट्स रखता है
अतः ब इंटरसेक्शन डी परिणाम है 6 और हम लिख सकते हैं सेट सी सेट आ का सबसेट है क्योंकि सी का हर एक एलिमेंट सेट आ में है
इसके लिए मार्क अप है सी सबसेट आ वहां तीसरे आइकन पर क्लिक करके एलिमेंट विंडो जाँच कर आप अधिक सेट ऑपरेशंस को लिखना सीख सकते हैं
व्यूग्ट एलिमेंट्सगट सेट आपरेशंस पर जाएँ
अब अपने काम को सेव करते हैं
फाइलगटसेव पर क्लिक करें
अब हम फैक्टोरियल फंक्शंस लिखते हैं
शीघ्र ही तीन फॉर्मूले लिखने के लिए हम नंबर्स को 1 से 3 तक नियुक्त करते हैं
ये राइटर डॉक्यूमेंट में कहीं भी इनको क्रॉस रेफेरेंस करने में मदद करता है
नए पेज पर जाने के लिए राइटर ग्रे बॉक्स के बाहर तीन बार धीरे से क्लिक करें
कंट्रोल एंटर दबाएं
फैक्टोरियल Function टाइप करें और दो बार एंटर दबाएं
अब हम जानते हैं कि माथ को कैसे कॉल करें
लेकिन वहां मैथ ऑब्जेक्ट को राइटर में लाने के लिए दूसरा तरीका है
इसके लिए राइटर डॉक्यूमेंट में लिखें फ़ एन और फ़3 दबाएं
अब हम नया मैथ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो कहता है ई इस इक्वल टो एम सी स्क्वेयर्ड और इसके साथ राइट में परेन्थिसिस में नंबर 1 है
मतलब इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी हम इस फार्मूला को नंबर 1 के साथ क्रॉस रेफेरेंस कर सकते हैं
हम इसका विवरण बाद में सीखेंगे
अभी के लिए माथ ऑब्जेक्ट पर दो बार क्लिक करें
और फ़ॉर्मेटिंग करते हैं
फोंट साइज 18 और लेफ्ट एलिग्नमेंट ठीक है अब फैक्टोरियल के लिए उदाहरण लिखते हैं
मार्क अप फैक्ट फैक्टोरियल सिंबल दर्शाता है
अतः वर्तमान फार्मूला को अपने वाले से ओवरराईट करें
5 फैक्टोरियल 5 इंटो 4 इंटो 3 इंटो 2 इंटो 1 120
यहाँ मार्क अप पर ध्यान दें
यहाँ एक नए मैथ ऑब्जेक्ट में हम अपना नया फार्मूला लिखते हैं
इसके लिए सबसे पहले राइटर ग्रे राइटर ग्रे बॉक्स के बाहर धीरे से तीन बार क्लिक करें
इस पेज के अंत में जाने के लिए दो या तीन बार डाउन एरो की दबाएं
और दूसरे मैथ ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए टाइप करें फ़ एन और फ़3 दबाएं
फिर हम दुबारा फ़ॉर्मेटिंग करेंगे
और वर्तमान फार्मूला को फैक्टोरियल डेफिनिशन के साथ ओवरराईट करें
एन फैक्टोरियल इस इक्वल टो प्रोड फ्रॉम क 1 टो एन ओएफ क
मार्क अप प्रोड पर ध्यान दें जो परिणाम दर्शाता है समेशन के लिए सिग्मा के समान
अब पिछले दो की तरह ही तीसरा मैथ ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करते हैं
और स्क्रीन पर प्रदर्शित फ़ैक्टोरियल डेफनिशन को दो कंडीशनल फॉर्मूले की तरह पुनः लिखें
मार्क अप बिनोम पर ध्यान दें जो दो एलिमेंट्स के खड़े स्टैक दर्शाता है और अच्छे अलाइनमेंट में मदद करता है
अब हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को क्रॉस रेफेरेंस कैसे करें
इसके लिए नए पेज पर जाते हैं
और टाइप करें एएन एक्जाम्पल ओएफ फैक्टोरियल इस प्रोवाइडेड here अब इंसर्ट मेन्यू और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें
नए पॉपअप में टाइप लिस्ट में टेक्स्ट सेलेक्ट करें
फिर सेलेक्शन सूची में पहला आइटम चुनें जो पहला फ़ैक्टोरियल फार्मूला जो हमने लिखा है दर्शा रहा है
अब इंसर्ट रेफरेंस टूल में रेफरेंस चुनें और इंसर्ट पर एक बार क्लिक करें और क्लोज करें
अतः हमारे टेक्स्ट के बाद परेन्थिसिस में नंबर 1 दिखाई दिया है और हमने यह कर दिया है
केवल इस नंबर पर क्लिक करके हम इसे जांचते हैं और ध्यान दें कि कर्सर उस जगह आ गया है जहाँ हमने पहला फार्मूला लिखा
अतः यह है कि कैसे राइटर डॉक्यूमेंट में कहीं भी मैथ फॉर्मूले को क्रॉस रेफेरेंस कर सकते हैं
इसको सेव करते हैं
यहाँ मैथ के लिए कुछ रेफेरेंस लिंक्स हैं
libreofficeओआरजी डॉक्यूमेंटेशन लिंक पर गाइड्स डाउनलोड करें
माथ पर अधिक जानने के लिए आप निम्न वेबसाइट पर भी जा सकते हैं
और अंततः यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
राइटर डॉक्यूमेंट का उपयोग करें
इस ट्यूटोरियल में सेट्स के उदाहरण उपयोग करके आ यूनियन इस इक्वल टो यूनियन सी को जाँचें
आ माइनस ब का परिणाम लिखें
और राइटर डॉक्यूमेंट में दूसरे और तीसरे फ़ैक्टोरियल फॉर्मूले को क्रॉस रेफेरेंस करें
यह हमको लिब्रियोफिस माथ में सेट्स फ़ैक्टोरियल्स और क्रॉस रेफ़रेंसिंग के इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे सेट आपरेशंस लिखें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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संयोजित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद